और छोटा सा अ अ अम --

और पीछे भी एक लेडीज है एक जेंट्स है पिला कलर का टी-शर्ट पहने हुए जो मास्क लगाये हुए है और पीछे एक अम बाइक का गाड़ी का का--

एक खेत जैसा बड़ा सा खेत दिख रहा है जहाँ पे गेहूं नीचे अम हरियाली-हरियाली गेहू है और तीन मोटा-मोटा पोधा लगा हुआ हैं एक पतला सा और ऊपर आसमान दिख रहा है और बिजली का तार दिख रहा --

है जिस पे का चित्र बना हुआ है जिस पे --